ruby में अरिथ्मेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
अरिथ्मेटिक ऑपरेटर्स
ऑपरेटर प्रेसिडेन्स
रिलेशनल ऑपरेटर्स
यहाँ मैं उबन्टु लिनक्स वर्जन 1204 ruby 193 का उपयोग कर रही हूँ
इस ट्यूटोरियल के अनुकरण के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि लिनक्स में टर्मिनल और टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कैसे करें
आपको irb की जानकारी होनी आवश्यक है
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ
अब अरिथ्मेटिक ऑपरेटर्स के बारे में सीखते हैं
ruby के पास निम्न अरिथ्मेटिक ऑपरेटर्स हैं
+ ऐडीशन: जैसे a+b
सब्ट्रैक्शन: जैसे ab
/ डिवीज़न जैसे: a/b
* मल्टिप्लिकेशन जैसे: a*b
%मॉड्यूलस जैसे: a%b
** एक्सपोनेंट: जैसे a**b
irb का उपयोग करके इन अरिथ्मेटिक ऑपरेटर्स का अभ्यास करें
एक साथ ctrl alt और t कीज़ दबाकर टर्मिनल खोलें
आपके स्क्रीन पर टर्मिनल विंडो दिखती है
टाइप करें irb और इंटरैक्टिव ruby आरम्भ के लिए एंटर दबाएं
टाइप करें 10 प्लस 20 और एंटर दबाएं
एडिशन ऑपरेशन क्रियान्वित हुआ और परिणाम 30 प्रदर्शित हुआ है
इसी प्रकार सब्ट्रैक्शन और मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन भी क्रियान्वित हो सकते हैं
अब डिवीज़न ऑपरेशन का अभ्यास करें
टाइप करें 10 स्लैश 4
और enter दबाएं
यहाँ आप देख सकते हैं कि परिणाम संक्षिप्त रूप में पूर्ण संख्या 2 के निकट आता है
अधिक अच्छे परिणाम के लिए हमें एक नंबर को फ्लोट की तरह व्यक्त करने की आवश्यकता है
टाइप करें 100 स्लैश 4
और enter दबाएं
अब हमें परिणाम 25 मिलता है
अब मॉड्यूलस ऑपरेटर का अभ्यास करते हैं
मॉड्यूलस ऑपरेटर आउटपुट में शेषफल देता है
टाइप करें 12 परसेंटेज साइन 5 और एंटर दबाएं
यहाँ 12 5 से डिवाइड हुआ है और शेष 2आया है
अब एक्सपोनेंट ऑपरेटर का अभ्यास करते हैं
2 के बाद दो बार ऐस्ट्रिस्क सिंबल और फिर 5 टाइप करें और एंटर दबाएं
इसका मतलब है कि 2 5 की पावर में आता है
अतः हमें आउटपुट 32 मिलता है
आगे अब ऑपरेटर प्रेसिडेन्स के बारे में सीखेंगे
जब मैथ्मेटिकल एक्सप्रेशंस में कुछ ऑपरेशंस होते हैं
हर एक भाग मूल्यांकित होता है
और ऑपरेटर प्रेसिडेन्स नामक पूर्व निर्धारित अनुक्रम में विभाजित किया जाता है
इसका मतलब है कि सबसे उच्च वरीयता वाले ऑपरेटर सबसे पहले क्रियान्वित होते हैं
इसके बाद वरीयता अनुसार अगला ऑपरेटर आता है और आगे भी यही क्रम चलता है
यह स्लाइड सारे ऑपरेटर्स को उच्चतम प्रेसिडेन्स से निम्नतम में सूचीबद्ध करती है
उदाहरणस्वरूप 3 + 4 * 5 23 आता है 35 नहीं
एडिशन ऑपरेशन + की अपेक्षा मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन * को उच्च प्रेसिडेन्स दिया जाता है
और पहले क्रियान्वित किया जायेगा
इसीलिए पांच बार चार बीस आता है और फिर 3 20 में जुड़ता है तो आउटपुट 23 मिलता है
अब ऑपरेटर प्रेसिडेन्स पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं
terminal पर वापस जाएँ
irb कंसोल को क्लियर करने के लिए एकसाथ ctrl और l कीज़ दबाएं
अब टाइप करें 7 माइनस 2 इसे 3 से मल्टिप्लाई करें
और enter दबाएं
हमें उत्तर 1 मिलता है
यहाँ माइनस साइन की अपेक्षा ऐस्ट्रिस्क सिंबल उच्च प्राथमिकता रखता है
इसलिए पहले मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन क्रियान्वित हुआ फिर सब्ट्रैक्शन
एक अलग उदाहरण देखें
कोष्ठकों में टाइप करें 10 प्लस 2 स्लैश 4
और enter दबाएं
हमें उत्तर 3 मिलता है
इस स्थिति में डिवीज़न स्लैश की अपेक्षा में कोष्ठकों की उच्च प्राथमिकता है
इसलिए कोष्ठकों के अंदर ऑपरेशन जो एडिशन है पहले क्रियान्वित होता है
फिर डिवीज़न क्रियान्वित होता है
अब रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में सीखेंगे
वापस स्लाइड्स पर आते हैं
रिलेशनल ऑपरेटर्स को कम्पैरिज़न ऑपरेटर्स भी कहते हैं
रिलेशनल ऑपरेटर्स उपयोग करने वाले एक्सप्रेशंस boolean वैल्यू देते हैं
ruby में रिलेशन ऑपरेटर्स हैं
== equals to जैसे a==b
डॉट eql question mark जैसे aeql b
!= not equals to जैसे a एक्सक्लेमेशन exclamation इक्वल b
लैस दैन से कम जैसे a< b
ग्रेटर दैन से अधिक जैसे a> b
<= लैस दैन or इक्वल टू जैसे a लेस दैन एरो इक्वल b
>= ग्रेटर दैन or इक्वल टू जैसे a ग्रेटर दैन एरो इक्वल b
<=> कम्बाइंड कम्पैरिज़न जैसे a लेस दैन एरो इक्वल ग्रेटर दैन एरो b
अब इन ऑपरेटर्स का अभ्यास करते हैं
terminal पर जाएँ
irb कंसोल क्लियर करने के लिए एकसाथ ctrl l कीज़ दबाएं
अब equal to ऑपरेटर का अभ्यास करें
इसलिए टाइप करें 10 ==10
और enter दबाएं
हमें आउटपुट true मिलता है
eql ऑपरेटर equal to ऑपरेटर के सामान ही है
इसका अभ्यास करें
अब टाइप करें 10 eql10 और एंटर दबाएं
हमें आउटपुट true मिलता है
अब not equal to ऑपरेटर का अभ्यास करें
टाइप करें 10 not equal 10
और enter दबाएं
हमें आउटपुट false मिलता है
यह इसलिए क्योंकि दो नम्बर्स बराबर हैं
irb कंसोल क्लियर करने के लिए एकसाथ ctrl l कीज़ दबाएं
अब less than ऑपरेटर का अभ्यास करें
टाइप करें 10 less than 5 और एंटर दबाएं
यहाँ अगर पहला ऑपरेंड दूसरे से लेस है तो ये true आएगा
नहीं तो ये false आएगा
हमें आउटपुट false मिलता है क्योंकि 10 5 से छोटा नहीं है
अब हम greater than ऑपरेटर का अभ्यास करते हैं
टाइप करें 5 greater than 2
यहाँ अगर पहला ऑपरेंड दूसरे से बड़ा है तो ये true आएगा
नहीं तो ये false आएगा
enter दबाएं
इस स्थिति में हमें आउटपुट true मिलता है क्योंकि 5 निश्चित ही 2 से बड़ा है
irb कंसोल को क्लियर करने के लिए एकसाथ ctrl l दबाएं
अब हम less than equal to ऑपरेटर का अभ्यास करेंगे
टाइप करें 12 लेस दैन इक्वल 12
और enter दबाएं
यहाँ अगर पहला ऑपरेंड दूसरे से छोटा है तो ये true आएगा
नहीं तो ये false आएगा
हमें आउटपुट true की तरह मिलता है क्योंकि 12 बराबर है 12 के
इसी तरह आप greater than or equal to ऑपरेटर का अभ्यास कर सकते हैं
अब कम्बाइन्ड कम्पैरिजन ऑपरेटर का अभ्यास करें
कम्बाइन्ड कम्पैरिजन ऑपरेटर
अगर पहला ऑपरेंड दूसरे के बराबर है तो 0 आता है
अगर पहला ऑपरेंड दूसरे से बड़ा है तो 1 आता है और
अगर पहला ऑपरेंड दूसरे से छोटा है तो 1 आता है
उदाहरण से समझें कि ये कैसे काम करता है
टाइप करें 3 लेस दैन इक्वल्स ग्रेटर दैन 3
और enter दबाएं
हमें आउटपुट 0 मिलता है
क्योंकि दोनों ऑपरैंड्स बराबर हैं जैसे दोनों थ्री हैं
अब किसी एक ऑपरेंड को 4 से बदलते हैं
टाइप करें4 लेस दैन इक्वल्स ग्रेटर दैन 3
और enter दबाएं
हमें आउटपुट 1 की तरह मिलता है
चूँकि 43 से ग्रेटर है
अब इस उदाहरण को फिर से बदलें
टाइप करें 4 लेस दैन इक्वल्स ग्रेटर दैन 7
और enter दबाएं
हमें आउटपुट 1 मिलता है चूँकि 47 से लेस है
नियत कार्य के रूप में
निम्न उदाहरणों को irb से हल करें और आउटपुट जाँचें
10 + ब्रैकेट 2 ऐस्ट्रिस्क 5 ब्रैकेट 8 स्लैश 2
4 ऐस्ट्रिस्क 5 स्लैश 2 प्लस 7
मेथड्स उपयोग करके अरिथ्मेटिक ऑपरेटर्स का अभ्यास करें
इसके साथ हम इस स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं
इसको सरांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा
अरिथ्मेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस ऐस्ट्रिस्क स्लैश: जो दर्शाते हैं ऐडीशन सब्ट्रैक्शन मल्टिप्लिकेशन डिवीज़न
ऑपरेटर प्रेसिडेन्स
रिलेशनल ऑपरेटर्स
कई उदाहरणों का उपयोग करके
निम्न link पर उपलब्ध video देखें
यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सरांशित करता है
यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं
spoken tutorial project team:
स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ चलाती है
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं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
यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर आधारित है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
आई आई टी मुंबई से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद